और यहां एक जे_सी_बी खड़ी दिखाई दे रही है और एक यहां पोल दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज और --

दे रही है और अब वहां कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है और टाइल्स --

और हमें यहां कुछ लकड़ियां भी दिखाई दे रही है।